और हमें दिखाई दे रहे हैं एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

एक काले रंग का है और एक हमें--

टीवी दीवार के ऊपर लगा हुआ हमें दिखाई दे रहा है।

और सफेद चादर बिछी है बेड पर और सफेद तखिए रखे हुए हैं।

और हमें दुकान के ऊपर बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है।

और इसके ऊपर नखराली लिखा हुआ है।

एक स्कूटर वहां उस तरफ सड़क पे दिखाई दे रहा है जहां लाल रंग की कार भी हमें दिखाई दे रही है।

और एक मकान बना हुआ है खिड़कियां नजर आ रही है ऊपर।

यह तस्वीर के अंदर लाइटें अंदर जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

काउंटर रखे हुए हैं और कुर्सियां लगी हुई हैं।

और हमें खाना पार्सल के लिए काउंटर पर संपर्क करें लिखा दिखाई दे रहा है।

तीन आदमी हमें बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

गार्डन एरिया है इसमें हरे भरे पेड़-पौधे--

आस-पास हरे-हरे बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

उस पर एक हरा एक पीला कुशन हमें दिखाई दे रहा है रखा हुआ।

और हमें दिखाई दे रहे हैं सामने हरे-हरे पेड़ लगे हुए।

और बाकी सारे भी बड़े-बड़े पेड़ हमें और पौधे गमलों में लगे दिखाई दे रहे हैं।

पानी हमें भरा दिखाई दे रहा है।

और हमें लाल रंग से पेंट भी करा हुआ दिखाई दे रहा है।

और टेबल के ऊपर फ्लावर छोटा पोर्ट फ्लावर पोर्ट रखा हुआ है।

और उसका गेट हमें नजर आ रहा है जिस पर ताला लगा है।

हमें नेशनल बाइक केयर का बोर्ड लगा नजर आ रहा है छत पर--

और हमें कपड़े हमें टंगे हुए नजर आ रहे हैं।

हमें इस तस्वीर में महिलाएं दिखाई दे रही हैं।